हरे कलर का डस्ट्बिन भी दिखाई दे रहा है । इस तस्वीर में मुझे घास-फूस भी दिखाई दे रहा है ।

इस तस्वीर मे मझे बहुत बड़े मेदान दिखाए दे रहेहे है जिसमे फसले लगे हुई है। तथा बोहोत सरे पेड़-पौधे दिखाई देते है। इस तस्वीर में मुझे दिख रहे है यहाँ एक लालब है जिसमेंपानी भरा हुआ --

इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ बहोत सारी खेलने एवं बहोत सारी कपड़े की दुकान हैं इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि बहोत ----

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ तथा सफ़ेद कलर का पेंट पेहना हुआ दिखाई दे रहा है तो एक टेबुल भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे पत्थरो की पुरानी दीवाल दिखाई दे रहे है तथा कुछ सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि बहोत सारे पेड़-पौधे ---

इसमें मुझे नीले रंग के बादल भी दिखाई दे रहे है इस तस्वीर में मुझे छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे रहे है तथा कुछ दीवाले भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक औरत बैठी दिखाई दे रही है और इस -इसके पीछे मुझे नीले रंग के बादल दिखाई--

तस्वीर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जिसका रंग मुझे संतरा दिखाई दे रहा है इसमें मुझे बहोत सारे दरवाजे तथा कुछ खिड़कियां नजर आ रही है इस --